यहाँ पे बहुत बड़ी मज्जिद दिखाई दे रही है मज्जिद में सामने की ओर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और देखने पर लग रहा है यहाँ कोई मेला लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है गार्डन के ओर बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पे बहुत बड़ी मछली दिखाई दे रही है जो की टैब्स में रखे गए हैं सामने की ओर बहुत सारी मछली रखी गई हैं।

यहाँ पे बहुत बड़ा रोड दिखाई दे रहा हैरोड जो है सीमेंटेड बनाया गया है इसमें कहीं-कहीं पे गड्ढे बने हुए हैं।

सामने की ओर में पक्का रोड बना हुआ है पीछे की ओर में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जिसमें कुछ झाड़ी दार है ऊपर के साइड में लाइन गई हुई है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग जो है मंदिर टाइप का बनाया गया है।

मंदिर वाइट कलर के हैं इन पर दरवाजे लगे गए हैं जो कि वाइट है।

सामने के ओर में एक बिल्डिंग दिख रही है जिस पर बैनर्स टंगे हुए है जिसपे लिखा गया है --

यहाँ पे कुछ लोग डोरी को पकड़े हुए है कुछ लोग रेलिंग को पकड़े हुए है यहाँ पे एक आदमी जो है वो नीचे की साइड में देख रहा है।

पेपर जो है रद्दी दिखाई दे रही है मतलब की न्यूज पेपर है पीछे की ओर में कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने के ओर में दो रेलिंग लगाई हुई है जिसमे येल्लो कलर और व्हाइट कलर किया गया है।

मूर्ति जो गुड्डा-गुड्डी की हैं आस-पास में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ जो हैं काफी मोटे कुछ पतले हैं इसमें वाइट कलर किये गए हैं।